टेम्पल जाने की एक देवस्थान देख रहा है।

और गेट है ब्लैक कलर का उसके ऊपर विग्द सेन का लोबा है केवल गेट के दौरान हम अंदर जा सकते है।

और तीन बच्चे है वहाँ पे तीन-तीन बॉयज है और एक लेडी बैठी हुई नज़र आ रही है ।

जातरे के लिए खोए हुए है बहुत सारे लोग हसे--